और ऊपर पंखा हुआ पंखा है और एक फोटो है और बाल्टी धरा हुआ है जिसमें बाल्टी में खाना है और टेबल --

हरा सा पेड़ है और इधर लगता है कि --

और इधर टेंपो है और टेंपो के आगे एक गाय से और एक व्यक्ति हैऔर व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पर जो कुर्सी ब्लू कलर का है।